लाइब्रेरी का माहौल काफी शांत है लाइब्रेरी काफी साफ-सुथरी है यहां पर काफी सारी किताबे है जिन्हें हम पढ़ सकते है।

जैसे की पेन पेंसिल रबर कटर ये सब भी चीजे भी यहाँ पर मिलती हैं।

यह एक मोर है मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है मोर अक्सर बारिश के मौसम में दिखते है मोर बारिश में अपने पंखों को फैलाते हैं।